ये चित्र ए-एक कॉलेज का दिखाई दे रहा है पीछे में गुलाबी रंग से रंगा हुआ है सामने की तरफ एक लाइट का खम्भा दिखाई दे रहा है।

सुंदर-सुंदर सोफे काले रंग के रखे है एक काले रंग के काउंटर पर बहुत सारा समान भी रखा दिखाई दे रहा है का बोर्ड नजर आ रहा है।